यहां पे स्विमिंग पूल है और इसमें दो तीन बंदे नहा रहे हैं और सामने वॉशरूम भी है वहां पे दो गेट लगें हुए हैं संडास भी है।

यहां पे जिम है और जिम के अंदर एक बंदा रेड कलर की टी शर्ट पहनी है और ये कुछ --

यहां पे पेंट्रोल पंप है यहां पे पेट्रोल डलवाने के लिए एक बाइक है और एक एक्टिवा खड़ी है और एक बंदा खड़ा है बा अ ब्लैक कलर का --

सामने से तार भी जा रहे हैं और हरे पेड़ भी लगे हुए हैं इधर उधर एक डंडा निकाला हुआ है।

पर्दा भी ऊपर लगा हुआ है एक बंदा जो है पैदल पैदल अंदर जा रहा है और फूल भी लगे हुए है काफी।

यहां पे गार्डन है और गार्डन के अंदर बहुत सारे गमले लगे हुए हैं गमले में पेड़ भी लगा रखे हैं और एक पे --

यहां पे एक लड़की बैठी है वो वाइट कलर के शूज पहने है ब्लैक कलर की पैंट पहने हैं और सेल्फी ले रही है और पीछे --

ब्लैक कलर का गेट लगा हुआ है और स्टूडेंट्स कुछ इसमें पेंटिंग कर रहे हैं।

यहां पे तीन बाइक खड़ी है और एक्टिव खड़ी है एक ब्लैक कलर की अं एक्टिवा है एक वाइट कलर की --

यहाँ पे बहोत सारी लड़कियां बैठी हैं जो व्हाइट कलर कि ड्रेस पहन रखी हैं और यहाँ पे योगा कर रही हैं और एक हि साइड --

बहोत सारी बसें खड़ी है जो स्कूल बस है और स्कूल भी है पीछे और बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं और एकदम हरे भरे हैं।

यहां पे बहुत सारा पानी भर रखा है और लोग बहुत सारे लोग यहां पे खड़े हैं अंदर पानी में आधे --

ऊपर से पुल जा रहा है और एक बंदा फोटो ले रहा है यहां पर।

यहां पे बुक स्टेशनरी शॉप है और यहां पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई है और एक बंदा जो है फोटो ले रहा है अपनी।

और ये कार भी खड़ी है और एक औरत रेड कलर का शॉल ओढ़े खड़ी है और एक ब्लैक कलर की कार भी है।

यहां पे पीछे बहोत सारा पानी भर रखा है और नाव पर दो बंदे बैठे हैं और अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं और पीछे बहोत --

और दो तीन लड़कियां कपड़े देखने के लिए जा रही है वहां पे और बहोत सारी लाइट्स भी लगी--

यहां पे बहोत सारे बच्चे खड़े हैं और एक आदमी बैठा है चेयर पर और इसको बिस्किट बांट रहा है।

यहां पे पलेट में चावल है और दाल है और मटर पनीर की सब्जी है और यहां पे --

यहां पे भजन संध्या हो रही है और एक बहोत अ एक लेडिस बैठी है जो बहोत बड़ा गिटार लिए हुए बैठी है।

यहां पे बहुत सारी चेयर रखी हुई है लकड़ी की और एक पंखा भी लग रखा है।

यहां पर माता जी का मंदिर है और यहां पर पूजा कर रहे हैं लोग और एक लाइट भी जल रही है और दो पंखे लगे हुए हैं और एक औरत पीछे बैठी हुई है।

और एक बंदा भी जा रहा है और एक रेड कलर की साड़ी पहने हुए लड़की खड़ी है।